और एक सिंपल वाली चम्मच है।

यहां बहोत सारे टू वीलर खड़े हुए हैं यहाँ पर--

यहां पर बहोत खाली जगह है।

यहां पर बीच में एक झाड है और बैठने की भी बहोत सारी जगए हैं।

दूसरी बिल्डिंग मे कलर नही है।

यहां पर एक खाली सड़क है यहां पर--